एक हम्म्म शीट कार्ड शीट है जिस पर बच्चों नें डिजाइनिंग --

पीला कलर का यूज़ किया गया है। पुताई पेंट किया गया है और पेड़ भी हैं।

छोटे-छोटे पॉट गमले रखे हुए हैं जिनमे छोटे-छोटे पौधे लगे हुए हैं।